जैसा लग रहा है कोई दुकान है। लिखिए बीस का ब्राइट फाल्लिंग जो बेहद ही अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ |

का नज़ारा देखने को मिल रहे है ।

एक गेट लगे हुए है जो बेहद ही खुबसूरत गेट का नज़ारा देखने को मिल रहे है।

जो बेहद ही अच्छे से बॉडी बना रहे है नीचे में टाइल्स भी मारे हुए है।